जहां पर एक बहुत लंबा घर है और यहां आस पास पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

खाना बनाते हुए नजर आ रहा--

ए नजर आ रहे हैं साम का टाइम है सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा --

देख पा रही हूं यहां कुछ ईंटे के घर अभी बनाए जा--

अन्दर एक केले का पेड़ लगा हुआ है।